यहाँ पे एक पिक-अप रखा हुआ हे जिसके पीछे एक गोडाउन है।

जो की बहुत बड़े बड़े हैं और हरे भी हैं ।

यहाँ एक वर्कशॉप है जहाँ पे बहुत लोग काम करने आते हैं |

जिसके पीछे बहोत से वर्कर काम कर रहे हैं।

जहाँ पे बहुत सारे बसे आके खड़ी हुई है |

यहाँ पे शहर में बहुत बड़े-बड़े घर घर हैं ।

और भारतीय डाक के उम पास एक लेटर बॉक्स भी रखा हुआ है।

स्टेज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी लाइटे लगी है।

यहाँ पे अमूल के सारे प्रोडक्ट मिल जाते है।

ऊपर तारो उ से उम बहोत ही परेशानी है।

यहाँ पर पावर प्लांट बना हुआ है |

जिसमें एगो बच्चा स्टेज पे उम भाषण दे रहा है।

जहाँ पे पन्नियों में निम्बू रखे हुए हैं।

यहाँ पे छोटे छोटे बाउंड्री लगे बनाये गए हैं |

यहाँ सिंह महिला महाविद्यालय धूमरा सीतामंडी है।

पार्क में हरे-भरे घास दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी हरे-भरे हैं ।